इसमें पानी पानी चल रहा है एक झरना सा है।

पानी का झरना है और पत्थर लगे हुए हैं।

चित्र यह है कि पूरे सजावट हुई है।

यहां यहां पे दो आदमी की सामान लेने के लिए खड़े हैं दुकान के आगे।

नदी के पार छोटे छोटे पहाड़ से दिख रहे हैं।

यूं एक एक घना जंगल है इसमें एक एक आदमी खड़ा हुआ है फूल लिए।

जंगली जानवरों का भी खतरा है बहुत ज्यादा।

इसमें टिन लगी हुई है।

एक नीली टंकी धरी है।

एक पीली नाव है पीली नाव के ऊपर दो आदमी बैठे हुए हैं एक औरत बैठी हुई है।

एक नीली नाव है नीली नाव के ऊपर एक व्हाइट टी शर्ट में बैठा हुआ है।

गुब्बारे टंगे हुए हैं एक लाल कलर का गुब्बारा है एक सफेद कलर का गुब्बारा है।

इस बस के अंदर नीले कलर कुर्सी हैं और उनके ऊपर ब्लैक कलर का पट्टा लगा हुआ है।

नीचे ग्रीन कलर का मैट पड़ा हुआ है और आग बुझाने वाला वो पड़ा हुआ है।

यहां पे तिरंगा लगा हुआ है और झाड़ी लगी हुई है झाड़ा वाड़ा गेट लगा हुआ है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे गमले में लगे हुए हैं और एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक औरत खड़ी हुई है उसके हाथ में एक बच्चा है।

दो आदमी उधर खड़े हुए हैं।

एक लाल टी शर्ट में है एक गाजरी टी शर्ट में है।

ये एक एक बूढ़ी एक आदमी इन्हें खड़ा हुआ है।

यहाँ पर चार तख़्त पड़े हुए है और कुछ खाटे बिछी हुई है।

यह एक साइड में दुकान है इसमें एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

ऊपर शट शटर भी लगे हुए हैं एक बल्ब जल रहा है।

इस इसके आगे ग्रील लगी हुई है।

यहां पे एक आदमी व्हाइट टी शर्ट में है एक आदमी रेड टी शर्ट में है।

ये एक एक एक जग एक बच्चा और है एक बाइक खड़ी है।

एक आलू के उपर चिट्ठी लगी हुई है। यह बहोत अच्छे आलू है।

एक सामने दीवार पर राधे राधे लिखा हुआ है।

ये बच्चो के झूलने का झूला लगा हुआ है।

पाइप लगे हुए हैं इसकी टीन के पास में--

यहां पर कुछ लोग कुर्ते पजामे में हैं टोपी लगाए बैठे हैं।

यहां पे पीले फूल है लाल फूल है सफेद फूल है।

सारी चीज अच्छी सजावट है यहां पे।

एक पाइप लगा हुआ है एक पाइप और नीचे झुका हुआ है गिरने के लिए।

औरत खड़ी हुई है और एक एक अंदर इसमें पीले कलर की पुट्टी हो रही है।

का इन डिब्बों के ऊपर कार छपी हुई है एक डब्बे के ऊपर --

कुछ मेहमान बैग लिए खड़े हुए हैं ये एक आदमी कुर्ते पजामे में है।

अंदर वाइट कलर के परदे लगे हुए हैं।

तीन टीन है यहां पर लीले कलर की टीन है एक काउंटर रख--

व्हाइट शल्ट में बैठा हुआ है बाहर मट्टी पड़ी हुई है।